और पाइप के साथ साथ एमे बैकग्राउंड में काफी चौड़ा और केगो पिलड़ बा एमे कम से कम दसगो पिलड़ होय दस बारागो।

मोर के पंख वा टीका कितना चल रहल वा चूड़ी